इस फोटो में हम देख सकते है कि यह एक मंदिर का दरवाज़ा है।

तार है ग्लू मशीन है और बहोत सारी चीजें हैं जो जहां पर इंसान बन रहा--

यह फोटो एक मंदिर में चढ़ाने वाली माला की है।

यह एक मंदिर का दृश्य है जहां पर लोग फूल फूल ले जाकर चढ़ाते है। इस फोटो में एक टॉवेल रखी हुई है टंगी हुई है।

यह फोटो एक शादी शादी में का है जिसमें दिखाया गया की बहोत अच्छा सा डेकोरेशन हुआ है इसमें--

यह फोटो एक चर्च का है जिसमें बहुत सारे लोग हैं।

उसका सिंबल बना हुआ है दो पंखे हैं लाइट है।

यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहां पर इस फोटो में एक घड़ी है सर्टेन है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं एक--

यह फोटो एक पहाड़ी एरिया की है जिसमें हम देख सकते हैं की झील से पानी गिर रहा है।

पहाड़ों से गिरता हुआ झरना है इसमें लोग नहा रहे हैं।

दुकान के अंदर कोई नहीं है दुकान के अ बिल्डिंग वाले छत से--

डोर खुला हुआ है इसमें वाइट कलर का फ्रेम वाला डोर भी लगा हुआ है।

जो रेतीला रास्ता बना पड़ा है पहाड़ों पे जाने के लिए एक छोटा सा मकान भी है।

यह फोटो एक साइकिल गैरेज का है जिसमें छोटे साइकिल रखे हुए हैं ऊपर--

नीचे रेंजर साइकिल रखी हुई है जिसमें साइकिल के पार्ट पुर्जे भी रखे हुए है।

यह साइकिल एकदम न्यू है यह फोटो एक साइकिल गेराज की है जो कि अ इसमें छोटे बच्चों का भी साइकिल है और बड़ों बच्चों का साइकिल पूरे कलरफुल --

इस तस्वीर में हम यह देख सकते हैं कि यह एक छोटा सा पौंड है जिसमें तीन कछुए हैं।

पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो यह एक सुनसान रास्ता है और यह देखने में काफी सुंदर लग रहा--

इस फोटो में एक सिक्योरिटी सर्विस का दुकान दिखाया गया है जिसके--

यह फोटो एक शॉप की है जिसमें इस फोटो में एक कंप्यूटर दिख रहा है जो कि अंदर रखा हुआ है।

और इसपे फोर जी लिखा हुआ है। यह येलो कलर का अंदर से पेंट हुआ है।

इस फोटो में हमें एक नदी दिख रही है जिस पे एक बांध बना पड़ा है जिसमें--

मे एक नेटवर्क टावर है जो बहोत सारे वायर को --

और आसपास शाम का माहौल है यह दृश्य देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।

नदी के उस पार बहुत से जंगल टाइप के पेड़ भी है।

इसके पीछे जो अलमारी है उसमें दो कवर्ड है दोनों अलमारीयो में--

इसमें बहोत सारे रोज हैं। यहां पे व्हाइट कलर की हैंगर में अ कैंडल लटका हुआ है।

यह तस्वीर एक चौराहे की है यह चौराहा पर एक दुकान है शाही कैटीन नाम है जिसका--

एक इंसान है जो अपने सर पर पगड़ी बांध हुआ और अपने कंधे पर चादर रखा हुआ है।